इस पिक्चर में भी एक घर दिखाई दे रहा है घर अभी बिलकुल अधूरा ही बना है सिर्फ खंभे ही खड़े हुए है और उनमे बहुत सारी छड़े भी दिखाई दे रही है और उसके यहीं ही एक पानी के लिए टंकी बनी हुई है जो --